साथ ही में एक लिफाफे में मिर्चे भी रखी हुई है। आदि मिर्चो को जमीन पर रखा हुआ है।

नीचे की तरफ काफी व्यक्ति खड़े हैं और वेलकम होरा लिखा हुआ है नीचे लाल रंग का कारपेट भी बिछाया है।

स्टेशनरी फोटो कॉपी बुक बोर्ड लगाया हुआ है जिसके नीचे दूकान है जो की स्पोर्ट्स --

आसपास से गुजर रही है प्रदान डाकघर कोरबा सफेद रंग की स्याही से लाल रंग पर--